और खम्भे दिख रहे हैं और एक दो तीन चार पांच छे सात आठ पेड़ भी दिख रहे हैं।

और उसके बाहर दो पुलिस वाले दिख रहे हैं और एक दो तीन चार पांच छः सात आदमी भी दिख रहे हैं।

और पहिया भी दिखायी दे रहे हैं दो और दो मिस्त्री उस गाड़ी को ऊपर तान करके नीचे उसे बना रहे हैं नीला कपड़ा पहने।

भाइयों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। हमको यहाँ पर एक दो तीन औरतें हाथ को फेलाकर बैठी हुई दिखायी दे रही हैं।

हम को उस न्यायालय में कई सारी कुर्सीयाँ और लोग बैठे हुऐ भी दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी खिड़की पे खिड़की के पास खड़ा दिखाई दे रहा है और सत्य मेव जयते निशान भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र के अंतर्गत हमको एक घर दिखाई दे रहा है तीन ताड़ के पेड दिखाई दे रहे हैऔर गमले भी दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर हमको पर्वत दिखायी दे रहे हैं और हमको झाड़ियाँ भी दिखायी दे रही हैं और पेड़ पौधे भी दिखायी दे रहे हैं।

भाइयों हमको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र के अंतर्गत हमको पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और हमको यहाँ पर योग करते हुए बहोत सारे लोग --